दो आदमी बैठे हुए हैं और एक आदमी खड़े हैं जहां पे की समोसा है मिठाइयां है बहोत सारे--

जहां पे खे दो टीचर है।

प्ले ग्राउंड भी है और बाउंड्री घेरा हुआ है यहां पे कि ये फील्ड है यहां पे बहुत--

यह एक मॉल है यहां पे कि बहुत तरह तरह की सामान बिक रहा है तरह तरह की सामान यहां पे है।

यह एक दुकान है जहां पे की बहोत तरह का सामान टांगा हुआ है रखा हुआ है।

यह एक मंदिर है जोकि पूरे हरे भरे गाछी दिख रहे हैं और यहां पे बहोत साड़ी औरतें बैठे हुए हैं।

यह एक जगह है जोकि यहां पे बहोत सारे हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं और बहोत सारे सुनसान जगह--

यहां पे एक जगह है जो कि यहां पे बहुत सारे आदमीयां हैं और अगल बगल में घर भी हैं।

यहां पे एक जगह है जहां पे की बहोत सारी मूर्तियां बन रहे हैं और बहोत सारे आदमी भी है यहां पे खड़े हैं।

यह एक जगह है यहां पे पूरे रोड सुनसान लग रहे हैं और वहां पे एक घर बना हुआ दिख रहा है।

यहां पे एक जगह है यहां पे तीन जेंट्स खरे हैं और यहां पे पूरे सुनसान जगह हैं यहां पे कोई नहीं दिख रहा।

और भईया बैठे हुए है और यहां पे कु--

यह एक पार्क है जहां पे सुनसान जगह है हड़े भड़े पेर सब दिख रहा है और यहां पे सुनसान जगह है।

और वहां पे बेड लगा हुआ है सोफा भी है लाइट भी लगा हुआ है।